रेहड़ी नाल लगाए हैं ये सब ऐसे लिखे हुए हैं एक दो तीन चार पांच छह जगह।

और शायद इसके ऊपर मिरर रखा हुआ है जो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है उसपे फूल दिख रहे हैं उसके ऊपर टेबल पे अ--

ये एक गाड़ी दिख रही है इसमें दो लड़के काम करते हुए दिख रहे--

जोकि बड़ा सा है काले कलर का और उसे पर डिजाइन बने हुए हैं और गुब्बारे लगे हुए हैं।

इसके साथ पास में एक शायद नीचे लाइट भी रखा हुआ है और इसके साथ में बिल्डिंग भी बनी हुई है।

और क्या कहते है शायद ये पारक में है।

ये एक डॉक्टर है शायद जोकि किसी का--